लिखा हुआ है इंग्लिश में स्टेट बैंक ए.टी.एम लिखा हुआ है ग्रीन कलर पर--

इसमें एक डम्फर है डम्फर के पीछे साइड खुला हुआ--

इस इमेज में लोहे के कुछ अ स्क्रू वगेरा दिखाए गए है लोहे से बने हुए--

पूरी गोल्डन मूर्ति है। कुछ श्रद्धालू पूजन करते दिख--

इसमें बड़ा-सा काँच लगा हुआ है काँच पर बल्ब दिखाई दे रहे हैं।

बाजू में एक गार्डन है। गार्डन में येल्लो कलर के फूल लगे--

दो महिलाएं खड़ी दिखाई गयी है।